यहां पर हम देख सकते हैं जैसा की--

यहां पर राइट हैंड साइड में कुछ लोग चल कर जा रहे हैं।

इसमें काफी सारे बच्चे अलग अलग कपड़ों में नजर आ रहे हैं।

और यहां पर हम देख सकते हैं कुछ डस्टबिन भी है जो की दर्शाता है हमे यहां पर स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए।

चीज की लग रही है या तो फिर ये लोहे की है या फिर ये स्टील की है।

यह एक प्रोडक्शन प्लांट नजर आ रहा है।

और आगे हम देख सकते है यहां पर रेड कलर का एक गेट बना हुआ है।

और यहां पर काफी सारे मरीज भी खड़े हुए--

नीला नजर आ रहा है। इसके सामने जो है वह पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप का टावर भी नजर आ रहा है।

इसके बीच में जो है ब्लू कलर का खाली स्थान भी है।

बहोत ही सुंदर दृश्य है और यहां पर काफी सारे भीड़--